इस तस्वीर मे मुझे कुछ झूले दिखाई दे रहे है ये मुझे कोई पार्क लग रहा है।

इस तस्वीर में सामने एक नीम का पेड़ दिखाई दे रहा है और कुछ मकान दिखाई दे रहे हैं।

उसके आगे कुछ बड़ा सा पोस्टर लगा जिसमें व्हाइट --

तस्वीर में मुझे सड़क दिखाई दे रही है। एक सामने कार दिखाई दे रही है।

और सामने एक ढाबा दिखाई दे रहा है जिसके अंदर कुछ व्यक्ति दिखाई दे रहे है इस ढाबे के आगे कुछ नाम भी लिखे हुए है।

गाड़ियों के अंदर शीशे लगे हुए हैं और एक आगे पोस्टर दिखाई दे रहा है जिसमें कुछ नाम लिखे हुए हैं।

दुकान दिखाई दे रही है जिसका शीशे से बना हुआ है दीवार पे वाइट कलर में कुछ नाम भी लिखा है।

इस तस्वीर में मुझे दो लड़कियां दिखाई दे रही है जिनके हाथ में मोबाइल भी है और सेल्फी ले रही है।

कुछ टेबलों पे मछलियां दिखाई दे रही है कुछ बड़ी कुछ छोटी कुछ कटी हुई मछलियां भी दिखाई दे रही है।

दीवारों पे कुछ गुब्बारे भी दिखाई दे रहें हैं पास में मुझे देवताओं की फोटो दिखाई दे रही है जिस पे मालाएं लगी हुईं हैं।

सामने बड़ी दीवारें दिखाई दे रही है पत्थर की बनी कुछ कुर्सियां भी दिखाई दे रही है कुछ मकान भी पास में देख --